मुझे इस फोटो पर रॉड दिखाई दे रही--

मुझे इस फोटो पर कुर्सी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर पुतरा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बेदेंता बुक्स वलर--